और यहाँ पर कुछ व्यक्ति खडे़ हुए हैं और इस स्विमिंग पूल मे खंबा भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक मकान बना हुआ--